और एक पुल है और पेड़ बहुत सारे एक खटिया है।

बस मे समीर लिखा हुआ हैपीछे ता आसमान भी दिख रहा हैऔर उपर तार वगेरा दिख रहे हैएक पेड़ का खुट्टा है।

यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां चार लोग आबेलेबल हैं

यहाँ पे हमे दो कपल नजर आ रहे है जिसमें लड़की है जो की बैठी हुई है चट्टान के पास चट्टान पर एंड जो लड़का है वो पत्थल को पकड़े हुए है खड़ा हैं।

यहाॅं पे हम देख सकते है की एक इंजीनियर खड़ा है डट के सामने पीछे उनके रड है जो कि रात का समय है पीछे अंधेरा है कुछ बोड़ा है नीचे रखा हुआ है।

कुछ रखा हुआ है कुछ बैठी है लड़किया उधर बेग है घास है दरवाजा है ग्रिल है जिस मे ताला लगा हुआ है। और--

बेंच है और एक मैम है जोकि देख रही है उनलोगो को और एक लडका है जो की उधर से आ रहा है खिड़किया है दीवाल है।

धुलदानी है घंटी है दीवाल है जो के वाइट कलर का दीवाल है।

यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक सैलून है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी है जो कि उसका हैर को काट रहा है और मिरा है लाइट है।

यहां पर हम देख पा रहे है कि एक कंप्यूटर रखा हुआ हैऔर दो तीन लेडिज हे दो आदमी बैठे हुए है चेयर पर टेलिफोन है

पीछे में बहुत सारा घड़ा रखा हुआ हैं नृत करने के लिए और भी इधर हैं जो की लड़कियां लोग बैठी है चेयर पर चेयर पर--